इसी तालाब में यह मगरमच्छ रहता है ठीक है तो यहां पर आप बच कर आओ ताकि आप यहां पर सावधान रहो।

और सैनिटाइजर है और बी कई सारी चीजे जो हमारी डेली यूज़ की रहती हैं मतब दवाई वगैरा यहां पे आपको देखने को मिलेगी। आप यहां से खरीद सकते हो अगर आपको दवाई लेनी है तो।

आप देख सकते हो यहाँ प्लेटो में फ्राई-राइस रखा हुआ है और यहाँ पे कोल्ड-ड्रिंक की बोतले भी है।

आप देख सकते हो ये एक मंदिर है हम को मंदिर का गेट दिख रहा है। उसके अंदर पेड़-पौधे लगे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे किनारे-किनारे फूल-पौधे लगे हुए हैं मंदिर के चारों तरफ बोहोत बड़ा सा मंदिर है एक दम खुले एरिया में है। देख के बोहोत अच्छा लग रहा है ये मंदिर --

इसके अलावा उसके ऊपर लोगो ने गन्ने रखे हुए है। आप देख सकते है बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा करने आये हैं। लेडीजे चारो तरफ बैठी हुयी हैं और बैठ के यहाँ पे पूजा कर रही हैं।